है जिनके हाथ में कलर पेन पेंसिल बुक्स वगैरा है।

जहाँ पर थोड़ी-थोड़ी हरी घास हैं।

वहीं एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

और उसी बसेज के पास कई सारे बड़े-बड़े पाइप रखे हुए है।

अ पीछे की ओर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है ।

यह एक स्टेडियम बना हुआ है ज --

जहाँ पर ग्रीन - ग्रीन घास उगी हुई है |

साइड में ग्रे कलर की टेबल रखी हुई है।

जहाँ पर साइड में एक बंधन बॅंक का बोर्ड लगा हुआ है।

एक फोन चला रहे है एक उसे देख रहा है।

उसके पीछे उसकी सवारी बैठी हुवी है।

और ये पेंसिल्स का बॉक्स रखा हुआ है।

साइड की हुई है और एक काउंटर है जिसमें --